इस नदी के बाहर हरे रंग की घास दिखाई दे रही है।

इनके डब्बे लाल सफेद नीले पीले दिखाई दे रहे हैं।

इस पर चार गोले लगे हुए हैं जो की लाल हरे सफेद और नीले रंग के हैं।

यहां पर गाजर और फूलगोभी और भी भिन्न प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही है।

जो कुर्सियों पर बैठे हुए है कुछ लड़के खड़े भी हुए भीं है और कुछ बैठे हुए भी है।

बहोत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए उसको देख रहे हैं।

यहां पर काले रंग की छत दिखाई दे रही है यहां पर एक ऐ_सी लगा हुआ है।

यहां पर बड़ी मशीनों की एक वर्कशॉप दिखाई दे रही है जिसमें कई प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं।